यहाँ पर कुछ बच्चे और बच्चियाँ बैठी हुई हैं ।

लेडीज और जेंट्स बैठे हुए हैं और --

बिजली वाली चल रही है और यहाँ पे ऊपर से लाइन का तार गया है।

उसमें कुछ बच्चे और शिक्षक दिखाई दे रहे हैं पीछे हरे-भरे वृक्ष लगा हुआ है।

इसी में एक लड़का खड़ा है।

जो कि सामान बेच रहा है यहाँ पर बहुत सारे सब्जी दिखाई दे रहें हैं।

यहां मारुति सुजकी का शोरूम दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत सारे बाइक लगे हुए है और इस शोरूम मे बगल से कांच लगा हुए है।

और यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं भाला लेके और बहोत ही बड़ा मकान पीछे दिखाई दे रहा है और अन रात का टाइम लग रहा है जिसमें सुन्दर सा लाइट से सजाया गया है।

जिसमें कुछ लोग दिखाई दे रहें हैं बेड पे उजला कलर का कपड़ा बिछा है और ब्लू कलर का पीछे कांच लगा हुआ है यह बहुत ही साफ-सुथरा दिखाई दे रहा है अस्पताल जो की बहुत ही --

कचरे चुनते हुए दिखाई दे रहे है यह होटल --